आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लोग लेनदेन के लिए आते हैं पैसे लेनदेन के लिए--

ये बेकरी का शॉप है देख सकते हैं अाप इसका नाम द केक वर्ल्ड है।

ये बोहोत बड़ी नदी है और यहाँ पे बीच में डेंजरस का बोर्ड अम ये लगाया हुआ है यहाँ पे जाना डें है।